पेड़ भी दिखाई दे रहा है और सामने के तरफ--

और उसके बगल में मुझे फुटबॉल भी दिखाई दे रहा है।

जो कि सफेद कलर का है और उसके नीचे बहुत सारी औरतें और मर्द खड़े हैं।

इस दृश्य में मुझे एक बहोत बड़ा सा ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है।

जिस पे बहुत सारी लंबी लंबी तार लगे हुए हैं।